इस तस्वीर मे एक गोल सर्किल जैसा कलरफूल दिखाई दे रहा है जो की एक येल्लो कलर का है एक ग्रीन कलर का एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का है।

तस्वीर में जमीन की खुदाई चल रही है एक येल्लो कलर का क्रेन जो की जमीन की खुदाई कर रहा है। तीन लोग खड़े हैं एक अ --

इस तस्वीर में यहाँ एक घुमत जैसा एक घड़ी के अह अह आकार का खड़ा है अह जिसको अह अह जिसको घंटा घर कहते हैं।

आगे मे तीन कुर्सियां दिख रही है रेड कलर की बहुत सारा लाइट जल रहा है। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे जोकि खड़े हैं यहाँ ऊपर अअ छत पर और कुछ लोग नीचे खड़े हैं।

और वो जो आदमी है वो रे वो ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और ब्लू कलर का पैंट पहना हुआ है।